और गी इन इंस्ट्रूमेंट बिक रहे है जो स्पेशली गाने गाते हुए जो गिटार है सितार है तबला है।

दिख रहे है जो सोल्जरस रहते है जैसे आर्मी --